और बगल में एक बस है जो कि पीले रंग का है।

बस के बगल में भी एक आदमी है सामने वाले आदमी ने काले रंग का टी शर्ट नीले रंग का पेंट और गर्दन पर गमछी लपेट रखा है।

और उसके दोनों साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एक साइड वाले बिल्डिंग में दो ए_सी क्या आउटडोर यूनिट है जो सफेद रंग के हैं।

इसमें बहोत सारे लकड़ी के समान है और बहोत सारे अलग अलग तरह के समान है।

ऊपर से डिन का करकट लगा है और बहोत लोहा लगा है।

और उन सभी में लाइव कंप्यूटर रखा है।

सभी डिब्बो का रंग लगभग काला और सफेद लाल है।

सामने गेट है जोकि भूरे रंग का और नीचे जमीन चेन गेट लगा है ऊपर से बहुत सारा तार पार हुआ है और ऊपर बहुत सारे बड़े बोर्ड लगे हुवे हैं।

चारों पिलर का भी रंग सफेद है और ऊपर बहोत सारी लाइटें लगी है सामने बहोत सारी गाड़ियां हैं।

पीछे एक स्कूटी है और तीन चार साइकल है जो की काफी पुराने हैं।

और बहोत सारे मोटे मोटे काले रंग के केबल है और एक सीढ़ी पड़ा है जो की सफेद रंग का है केबल का रंग काला है सामने एक ट्रक है जिस पर बड़ा सा चैन वाला एक्सकैवेटर है।

सभी कंप्यूटर और मॉनिटर वगैरह का रंग काला है।

रोड है और ऊपर से लोहे भी लगे हैं।

हरे हरे है और काफी बड़े बड़े है और पीछे बहौत सारे घर भी है।

ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के बोर्ड लगे हैं दुकानों के शटर का रंग सभी का एक है जो कि नीले रंग का और दीवार का रंग सफेद है और ऊपर जो बीम है उसके बॉडर का रंग पिला है।

और वहां एक पुल है बीच में एक नदी है।

बगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और काफी सारे पेड़ है जोकि काफी बड़े बड़े है और हरे रंग के है।

और बगल में ब्लॉक लगा है।

बहुत सारे लोग बाजा रखे हैं और एक एक कंधे पे बैग है।

पीछे बहुत सारे पेड पौधे है।

और बगल में एक पेड़ है जो कि हरे रंग का है।

और एक लड़की और एक औरत है।

इसमें नीचे से घास जमा है।

पीछे एक बड़ा सा पंडाल लगा है।

पीछे बहुत सारे लाइटे जल रही है।

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम है और दो टेबल है।

पर्दा लगा है जोकि लाल और सफेद रंग का है और एक गेट है जो कि भूरे रंग का है और बाहर से रोसनी आ रहा है।

और सामने एक गेट लगा है जो कि लोहे का है और उसका रंग भूरा है सामने एक चेयर है।

फोटो में एक दुकान है जिसमें बहोत सारे रैक है।

सामने एक वाल फैन है जो कि सामने से लगा है और हरे रंग का स्ट्रिप लाइट लगा है।

लगभग आदमी के हाथ में झोला रखा।

इस फोटो में एक स्टेज बना है जिस पे तीन लड़कियां हैं।

और पीछे से पर्दा लगा है जो कि नीले रंग का है।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

दीवार का रंग ऑरेंज टाइप का है और नीचे बहुत सारे कारपेट जैसे बिछे है।